ये एक सब्जी मार्केट दिख रहा हैं इमेज मे कुछ लोग सब्जिया बेच रहे हैं आपस मे बतिया रहे हैं की आज ग्राहकी कम आ रही हैं ग्राहक नहीं दिख रहे हैं।